यह एक किसी सेंटर की तस्वीर या स्कूल की तस्वीर है ।

एक सर्विस बॉडी शॉप कनक ऑटोमोबाइल की शॉप है।

यह एक लड़के की तस्वीर है जो की स्वेटर और नीली शर्ट पहना हुआ है| इयरफोन लगाया हुआ एक भटे के पौधों के पास खड़ा है और --